बगल में एक औरत और एक आदमी खड़ा है।

इसमें लाइन से बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

छतों पर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं।

इसमें रंग बिरंगे हैं प्लास्टिक के।

जिसके ऊपर छोटे छोटे पौधे रखे हैं।

सामने एक फुल लटका हुआ है।

और इसमें साव लाइन से खंभे लगे हैं रेड कलर में।

सामने लोहे के जाली के रेलिंग लगी हुई है।

यह एक बहुत लग्जरी होटल है।

इसके बाहर वाल शीशे से कवर अप हुआ है।

घर के बाहर छोटा से डब्बा रखा है रेड कलर में।

सामने जय माता दी लिखा है।

पूल के ऊपर भूल भूलइया का चित्र बना हुआ है।

और पुल के कोने पर अमौसी हिंदी और इंग्लिश में रेड कलर में लिखा है।

अलमारियों पर रंग बिरंगे किताबें लगी हुई हैं लाइन से।

जिसके एक साइड पत्थर लगे हुए हैं जमीन पे।

सामने स्टीकर पे बिलिंग काउंटर लिखा हुआ है।

जमीन पर बहुत सारे तार बिछे हुए हैं।

सामने दो तरफा जमीन पर एक साइड पे पत्थर है और एक साइड पर और टाइल्स है।

रोड पर एक स्कूटी खड़ी है।

जिस पर भैंसे ब्लैक कलर की जा रही हैं।

और छोटे छोटे खाने के काउंटर बने हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं।

जैसे ढोल बर्तन और भी बहुत सारी चीजें --

जिसकी जमीन पर बड़े बड़े रेड कलर के पत्थर बिछे हैं।

सामने लंबा सा शीशा लगा है।

और दरवाजे शीशे के बने हुए हैं।

मेज़ के ऊपर सॉस चम्मच और मेनू मसाले रखे हुए हैं।

दो आदमी ब्लैक कलर का सूट पहने हुए हैं।

लाइन से खंभे लगे हैं कलरफुल ।

लाइन से पतले पतले खंभे लगे हैं।

और छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे है।

सामने आलमारी बनी है जिस पर सैलून के कुछ सामान रखे हुए हैं।

सामने एक रेड कलर की बड़ी सी दुकान है चप्पल की।

रोड पर एक बाइक खड़ी हुई है।